ये एक बस है और ये बस जहानाबाद तक जाती है गया से और ये बस बहोत अच्छी है| यहाँ पे सीट भी बहोत अच्छी है और कम्फर्टेबल भी है ।